पीछे की तरफ मार्बल के पीस का ढेर लगा हुआ है।

पीछे बहुत बड़ा खुला मैदान है।

पानी में सफेद रंग का लाइट का रिफ्लेक्शन बन रहा है।

जिसके ऊपर एक सिंटेक्स लगा हुआ है।

रैको के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरह की चीजे रखी हुई है।

पीछे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे भी हैं।

जमीन पर टाइल्स भी लगा हुआ है।

इस दृश्य में एक शेड बना हुआ है।

यहां नदी में काफी ज्यादा पानी है।

पीछे काफी बड़े बड़े हरे हरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

इस दृश्य में बहोत सारे रैक हैं।

बहुत सारे कंप्यूटर सेटअप लगे हुए है।

जहाँ एक साड़ी को बहुत बड़े से फैला कर रखा गया है।

जेडे के अंदर चार कुत्ते के बच्चे हैं।

जहां सामने की तरफ एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

कहीं कहीं के एरिया को भूरे रंग से पेंट किया गया है।